उस मैदान के चारों और बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं जिनके पत्ते हरे रंग के हैं।

जैसी की हम देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है जिनके ऊपर सफेद एवं हरा रंग किया गया है।

शॉपिंग मॉल के दीवारों पे सफेद रंग के लाइट टंगे दिखाई दे रहे हैं तथा शॉपिंग मॉल के अंदर एक व्यक्ति कोई व्यक्ति शॉपिंग करते नजर आ रहा है तथा उसके साइड में एक बच्ची खड़ी दिखाई दे रही है।

जैसे की हम देख पा रहे हैं यह एक फैक्ट्री है फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं तथा फैक्ट्री के दीवारों पे सफेद रंग दिखाई दे रहा है।

जैसी की हम देख पा रहे हैं यह एक फलों का मार्केट नजर आ रहा है तथा उसके ठीक बाजू में एक घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

जैसे की हम देख पा रहे हैं यह एक सुंदर इमारत है| उसके ऊपर सफेद रंग किया गया है तथा उसकी खिड़कियों पे लोहे की ग्रिल दिखाई दे रही है।

इमारत के ऊपर सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है लाल एवं सफेद रंग की सीढ़ी उसके घर के ऊपर डाली हुई नजर आ रही है तथा उस घर के सामने एक पेड़ नजर आ रहा--

जैसे की हम देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है इसके ऊपर काँच लगा दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का है।

उस घर के सामने छोटी-छोटी चैयर दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है| उस चैयर के ठीक सामने एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही --

जैसे की हम देख पा रहे हैं एक स्टेज के ऊपर एक लाल रंग की सतरंज डाली हुई है जिसके ऊपर एक सुंदर महिला नृत्य करते हुए नजर आ रही है।

जैसे की हम देख पा रहे हैं यह एक स्टैशनेरी शॉप है जिसकी दीवारों पर सफेद रंग दिया गया है तथा उसके ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

उसके साइड मे एक रूम दिखाई दे रही है जिसके अंदर भारत देश का तिरंगा दिखाई दे रहा है।

जैसी की हम देख पा रहे हैं ये कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री के ऊपर टीन का शेड दिखाई दे रहा है।

जैसे की हम देख पा रहे हैं यह एक सड़क है सड़क की दाहिनें ओर एक पेड़ नजर आ रहा है जिसके पत्ते हरे रंग के है।